ये गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ के पास ब्लू कलर की योगा मैट हैं।

एक रेस्ट्रॉन्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पर येलो वाइट कलर के बैलून लगे हुए हैं।

खुला मैदान दिखई दे रहा है जहाँ पे एक बाइक रखी हुई हैं एक गेट लगा हुआ है ब्लैक कलर का जहाँ पे रेलिंग बनी हुई है जिसमें ग्रीन और ऑरेंज कलर का पेंट --

कुछ येल्लो कलर के इंस्ट्रूमेंटस भी पड़े हुए हैं काफी डमब्ल हैं ट्रेडमिल है।

ऊपर मशीन है जहाँ पे ग्रीन और रेड कार्पेट बिछा हुआ है कहीं ब्लैक कार्पेट भी है इन्हेलर लगा हुआ है और काफी सारे मशीने हैं जो कि ब्लैक और ब्लू कलर की हैं।

ये कोई पुल दिखाई दे रहा है नीचे बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है पुल येलो ब्लैक कलर का पेंट है यहाँ पे --

कांच का फर्नीचर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे सामान रखा हुआ है एक सोफा रखा हुआ है जिसमें वाइट कलर का कवर है।

ये मार्केट दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक बोर्ड लगा है होटल लियो एंड ऊपर भी एक बोर्ड --

एक लड़का दिख रहा है एक टंकी रखी हुई है और रेलवे का कम्पार्टमेंट दिख --

बांकी पूरा एक कार सर्विसिंग हो रही है।